यह एक नहर है यह नहर बहोत ही लम्बी नहर है।

यहाँ पर खेत भी है जिनमे अलग-अलग फसले लगी हुई है।

यहाँ पर टावर बने हुये है और बहुत सी बिलडिगे भी बनी हुये है।

बिल्डिगों के बाहर कुछ वाहन भी खड़े हुए है और यहाँ पर बहुत से खाली मैदान भी डला हुआ है।

यह एक तंदूरी हाउस है इस हाउस मे रोजाना अनेक लोग तंदूरी खाने के लिए आते हैं।

इस घर के चारों तरफ विभिन्न-विभिन्न प्रकार के हरे -भरे पौधे लगे हुए हैं।

मंदिर के ऊपर बनी भगवान शिव और पार्वती की मूर्ती बनी हुई है और मूर्ती के दोनों ओर भगवान गणेश और कार्तिके की मूर्ती बनी हुई है।

यह एक मंदिर है इस मंदिर का नाम शिवशक्ति नवग्रह मंदिर है इस मंदिर मे रोजाना अनेक लोग पुजा आरती के लिए आते है।